इस इमेज में बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

लगी हुई है कारे भी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में एक व्यक्ति ड्रिल मशीन से काम कर रहा --

यह इमेज जंतर मंतर जयपुर की है।

एक बड़ा सा मोर दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा है एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है।

इस इमेज में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई --